टेबल फॅन अलमारी बेड रॅक --

कोई व्हील चेयर पे बैठे हैं कोई इधर उधऱ घूम रहे हैं कोई खड़े हैं।

और बड़ा सा ग्राउंड भी लग रहा हैं वहां पर मस्त पूजा कर रहे हैं।

और उसके पास में दुकान भी लग रहा है लगता है दुकान में टायर टुयर बन रहे है कि क्या --

और अच्छे से उसको सजाया हुआ है।

परशुराम छूब्राह्मण मोहल्ला गांजाकवा वार्ड गोंदिया।

वह पे बड़ी वाली केनी लगी हुई है टंकी लगी हैं।

और कोई कोई लोग खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं।

पता है नारियल का भी पेड़ है ये और--

खाने पीने के लिए कुछ अ लाया होऊंगे और।

पीछे में एल_सी_डी लगी हुई है और --